लाइट भी है और बहुत सारी चीज है।

और बगल में बहुत सारे घर भी हैं।

इसमें बहुत सारे बच्ची लोग डांस कर रहे हैं।

और यहां स्टेज के पास सीढ़ी भी लगा हुआ है।

अ बहोत सारे टेबुल भी लगे हुए हैं और बहोत सारे कुर्सी भी है।

और यहां बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं रेस्टोरेंट के बाहर--

यह एक प्रोग्राम है जिसका नाओ वैलकम टू टूरिज्म कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र और ये औरंगाबाद में हो रहा है।

और इस बिल्डिंग के पास अह एक बड़ा सा पेड़ है।

यह एक बस स्टैंड है।

इस बिल्डिंग के अंदर भी बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं।

जिसके सामने एक बहुत ही बड़ा बाउंड्री लग हुई है।

कोई र अ दौड़ रहा है।

बिल्डिंग के बाहर बहोत सारे बांस लगे हुए है।

एक छोटा सा भैंस का बच्चा है।

और भैंस के कान में कुछ लगाया हुआ है।

इस दुकान का गेट ब्ल्यू रंग का है।

और बगल में एक सीढ़ी है दुकान के बगल में--

बिल्डिंग के पीछे बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं।

दुकान के बाहर दो मरकरी लगी हुई है।

और दुकान के बाहर बहुत सारे पिक्चर लगाए हुई है।

ये आदमी जिम कर रहा है।

और जिम में और बहुत सारे लोग हैं।

यहां पे रेड कार्पेट बिछाया गया है।

यह एक दुकान है।

और बहोत सारे चीज है खाने का।